इस पिक्चर में एक काफी बड़ी कार दिखाई दे रही है जो कि सफेद कलर की नजर आ रही है कार के पास ही एक--

लकड़ी के काउंटर बने हुए हैं और दरवाजा भी लकड़ी का दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ कांच भी लगे हुए हैं।

और भी बहुत सा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।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

इसमें एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है।

साइड में ही एक रोड भी दिखाई दे रहा है।

इसके टायर ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं पीछे ऑल इंडिया का एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

दिखाई दे रही हैजो कि काफी छोटी दिखाई दे रही है।

पीछे सफेद और लाल और गुलाबी कलर का डेकोरेशन काफी अच्छा लग रहा है।

पास ही में बैठने के लिए भी जगह दिख रही है।

ये एक योगा क्लासेस चल रही है जिसमें बहुत सारी लेडीज और जेंट्स औरत और आदमी--

पांव ऊपर करके हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं और दो लोग काफी--

डेकोरेशन दिख रहा हैएक आईना भी दीवार पर लगा हुआ है।

जिस पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और एक लड़का भी बना हुआ है।

उसके पास ही एक काफी बड़ी मीनार जैसी बनी है।

दूर-दूर तक हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है।

लाइट के काम में इस्तेमाल की जाती हैं।

बटन भी लगे हुए हैं कुछ लाल कलर के बटन --

यह एक योगा क्लासेस है जिसमें कुछ बच्चे एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यानी आईना लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

पास ही मै एक दरवाज़ा भी है जो की बंद है।

एक ब्लब भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और चारों तरफ शेड भी लगा है।

कुर्सी डस्टबिन कुछ डब्बे डलिया--

बाहर की तरफ लोहे का काफी बड़ा गेट लगा हुआ है।

महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन नाम का ये एक काफी बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

इस पिक्चर में गैस के सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं जो कि ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर हैं।

मुरम से दिखाई दे रहा है और एक घर के सामने बाहर गाड़ी भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

दूर-दूर तक मैदान नजर आ रहा है।

यह एक शादी समारोह हो रहा है जहां पर काफी व्यक्ति बैठे हुए और कुछ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

चारों तरफ लाइट ही लाइट नजर आ रही हैं।

ये एक लाल कलर की कार दिखाई दे रही है जिससे एक आदमी कुछ चिपका रहा है।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

और किनारे पर बहुत सारी मिट्टी भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

औरत के हाथ में एक चाय का कप भी दिखाई दे रहा है।

और उनके पीछे काफी सारी किताबें भी जमी हुई दिखाई दे रही हैं।

जो कि सारी लकड़ी की अलमारियों में किताबें जमी हुई दिखाई दे रही हैं।

जिसमें कुछ लाइट भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।